एक व्यक्ति चाय पी रहा है कुछ व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

प्रतिमा दिखाई दे रही है ऊपर टीन लगे हुए है एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक सूखा घास का मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

और बड़े से टंकियां भी दिखाई दे रहीं हैं यहां पर पर्क का भी एक पैकेट दिखाई दे रहा है और भी --

कुछ खंभे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं एक व्यक्ति स्कूटी पर बैठा हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो हेयर ड्राई कर रहा है यहां पर और भी कुछ सोफे और कुर्सियां दिखाई दे रही है यहां पर --

खड़े हैं यहां पर कुर्सी और बालटिंया भी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

यहां पर गमलों में कुछ पौधे लगे हुए हैं इन पर--

इस इमेज में बहोत सारी टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही है टेबल पर--

बाहर हाथ धोते हुए दिखाई दे रहा है।